देखिये ये इशू गॉड --

मौसम्मी जैसा दिखाई दे रहा है।

फूल्स वगैरा लगा हुआ है। उधर अशोका का पेड़ वगेरह दिखाई दे रहा है। उधर बिल्डिंग्स वगैरा है काफी अच्छी |

देखिए इस तस्वीर में नदी दिखाई दे रही है और पेड़ हैं और देखिए काफी सारी बिल्डिंग्स वगेरह --

यह मुस्लिमों का धर्म स्थल है यहाँ पे देखिए काफी सारे --